यह शोरूम बोहोत ही खूबसूरत है जो कि बोहोत सी इसमें मूर्तियाँ लगी हुई है। जिस --

यह रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट को रेड कलर के गुब्बारों से बोहोत ही खूबसूरती से सजाया गया है।

यहाँ पर बहोत ही अच्छी बाइकें कूटी मिलती हैं। यह बहुत अच्छा बेहतरीन शोरूम है।

स्में दो पंखे हैं। एक पंखा चालू है एक पंखा बंद है। यहाँ पर बहुत सी कुर्सियां और मेजे रखी हुई हैं।

यहाँ पर अलग अलग ही नॉनवेज डिशेज मिलती हैं जोकि खाने में बहुत ही लजीज और बेहतरीन होती हैं। यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं।

यह एक होंडा शोरूम के बाहर का द्रश्य है। यह उसका गेट है जिसपे होंडा लिखा हुआ है।

स्कूल बाहर की ओर से लाल और हरे और ऑरेंज रंग से पुता हुआ है और यहां पर एक आदमी खड़ा है।

यह कैफे और रेस्टोरेंट बहोत ही खूबसूरत है इसकी सजावट बहुत ही लुभावनी है।

यहां पर आप आंकर अपने गाड़ियों के अलग-अलग किस्म के अलग-अलग क्वालिटी के टायर को अच्छे से लगवा सकते हैं जोकि बोहोत ही अच्छे हैं।

यहां एक नदी नजर आ रही है जहां पर शाम के वक्त का नजारा है। यहां आस पास बहोत सी नावें खड़ी हुई हैं।